इस पिक्चर में जो नजर आ रहा है वो मिथिला बुक सेंटर है।

और यहां पर दो तीन दो तीन आदमी खड़े हुए है तीन चा--

और ये मिथिला बुक सेंटर में बहोत सारी--

वो किताबें होती हैं वो अवेलेबल हैं।

इस तस्वीर में जो अह डॉग और कैट होते हैं एनिमल --

इसमें जो हमें नजर आ रहा है वो जो साइबर कैफे है।

और काफी अच्छा डेकोरेट किया है बलून लगे हुए--

तस्वीर में हमें जो नजर आ रहा है कि अह--

इसमें हमें नजर आ रहा है कि जो शादियों में हम जाते हैं शादी पार्टीयों में उसमें जो स्टेज बना होता है दूल्हा दुल्हन का--

इस पिक्चर में जो हमें नजर आ रही हैं ये एस दाल--

यहां पाइप और सीमेंट रेत सब कुछ रखा हुआ है।

और नीचे एक साइकिल वाले जो भैया है वो जा रहे हैं।

ये जो उत्पादन किया जाता है किसी चीज का फॅक्टरीयो में उसमें--

इसमें तस्वीर में नजर आ रहा है के एक कच्ची सी सड़क है।

और जो भी सामान सेल होने का थोड़ा बहोत रखा हुआ है उसके लिए फिक्स रेट लिखा हुआ है।

में जैसा फाउंटेन में से निकलता है वैसा फाउंटेन टाइप का बना हुआ है।

और उसमें नीचे भी कमरे है और--

और वहां पर दरवाजे खिड़कियां बने हुए हैं।

इस में पिक्चर में जो हमें नजर आ रहा है ये एक ऑफिस का अह लग रहा है कि ओ --

और ब्लैक कलर की अ काले कलर की बहोत सारी अ कुर्सियां एक तरफ अलमारी है और बोर्ड लगा हुआ है।

अ बाहर का दिख रहा है या अंदर काम चल रहा है।

ये पिक्चर है श्यामकुंब लॉन्च की।

और उस पर लोग बैठे हुए हैं कुछ बातें कर रहे हैं।

अ ये जगह है एक बड़ा सा टावर लगा हुआ है।

सफेद और लाल हरी कलर की जो--

और खाली है मैदान पड़ा हुआ है आसपास घर बने हुए--

और ऐसा लग रहा है जैसे कि और ये उनका जहां गाड़ियां खड़ी होती है वो जगह है